साइड में ही एक मीटर लगा हुआ है।

ये थंब ऊपर से नीला है।

एक पे ब्लैक कलर का तार--

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी गैलरी दिख रही है।

कुछ कुंडसियां खाली पड़ी हुई हैं कुछ पर आदमी बैठे हुए हैं।

कुछ आदमी स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई दे रही हैं।

और वो स्विमिंग पूल के पास में ही एक बॉटल और कुछ सामान रखा हुआ है।

और कुछ बच्चों के हाथ में भारत का फ्लैग भी है।

कुछ औरतें आती जाती दिखाई दे रही है।

आगे जाते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

सामने एक मंडप दिखाई दे रहा है।

और कुछ बिलर हुआ चित्र दिखाया गया है।

सामने पी_ओ_पी का डिजाइन दिख रहा है।

टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है।

बीच मे एक एक ऑल आउट लग रहा है नीचे एक--

सामने दो कुर्सी जो ब्लैक कलर की हैं यहां पे पड़ी हुई--

सफेद और और नीली पट्टियां हैं पास में ही कुछ आदमी दिख रहे हैं।

सामने कुछ नीले रंग का अ थीम लगा हुआ है।

फोटो में सामने कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चे दिख रही हैं।

मैडम ने सफेद कपड़े पेहने हुए हैं पास में ही एक गमला रखा हुआ है।

और दूर देखेंगे तो कुछ बच्चे और दिखाई दे रहे हैं जो सेम ही काम कर रहे हैं।

इसकी बाउंड्री पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं।

बहुत सारे आदमी खड़े हुए है।

ऊपर एक टिन पड़ी हुई है जो की नीले कलर की है।

नीचे एक हौजी बनी हुई है जिसके तस्ला रखा हुआ है।

उसके ही पास में एक इनवर्टर लगा हुआ है।

एक ने तौलिया रखी हुई है सिर पर --

उसके पास में एक बिल्डिंग दिख रहीं हैं नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक पोस्टर लगा हुआ है नीचे एक गाड़ी के सामने कोई आदमी--

इस फोटो में सामने मंदिर दिखाया गया है।

पास में एक पुजारी पूजा कर रहा है।

मूर्तियों के सामने बहुत सारे फूल भी पड़े हुए हैं।